और एक आगे ट्रेन का डेमो भी बना हुआ है।

और बहोत सारी इसमे कलाकारी करके रखी गई है।

और इस होटल का गेट जो है वहे कांच का बना हुआ है।

और ये फोटो लगता है घर के बाहर गेट के पास की बनाई गई है।

इसके कुछ लोग कुर्सियों में बैठे हैं और कुछ लोग पैदल चल रहे हैं।

और ऊपर बहोत सारी कांच की खिड़कियां हैं।